यहाँ पर बाजु में पानी पड़ा हुआ है कई सारा पानी है खेतों में एक पेड़ है।

कितना सड़क में देखो कितना भारी तरीकों से पानी भरा हुआ है यहाँ पर कितना सारा पानी भरा हुआ है सड़क पर।

पानी में से कैसे निकल रही है यहाँ पर चद्दर - वगेरा पड़ी हुई है एक घर है यहाँ पर एक पेड़ है।

काफी बड़ा यहाँ पर ग्राउंड है ग्राउंड में कितनी सारी पेड़ लगे गए है यहाँ पर।

इ कार को न ऊपर कर दिया है कुछ मशीन से।

ये पेड़ है यहाँ पर पेड़ हैं काफी सारे पेड़ है यहाँ पर इधर भी है इधर भी है पेड़ --

पेड़ लागए हुए है और फिर उनको लगाएगे खेतों--

पुल वगेरा बना हुआ है ब्रिज बना है वहाँ पे सूरज है।

काफी सारे लोग खड़े हुए है यहाँ पर लाइन लगीं हुई है यहाँ पेट्रोल के लिए लाइन लगीं हुई है।

यहाँ पर सड़क है यहाँ पर रोड यहाँ आगे चल के थोड़ा घर है यहाँ--

यहाँ पर ये शटर लगी हुई है शटर के बाहर ये कुछ फर्जिया - वगेरा रखी हुई है यहाँ पर --

कुछ यहाँ पर दानपेटी रखी हुई है यहाँ पर ये दिया-वगेरा---

पैर पोछने पे आसन है ये एक पैर दान है यहां पर।